यह एक मंदिर है यह मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है यह मंदिर स्कूल के बगल में बना हुआ है |

यह एक एक्सिस बैंक है यह एक्सिस बैंक ए.टी.एम है |

यह एक पाँच हजार टन पार्किंग लोड है।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी गाड़ियों को वजन किया जाता है यहाँ पर हर रोज ट्रक को वजन किया जाता है यहाँ पर फुली लोडेड ट्रक को वजन किया जाता है।